ये देखिए यहां पर ये कोई मंदिर है और यह रेड कलर का मंदिर है यहां पर।

खड़े हुए हैं और कुछ बाइक भी यहां पर खड़ी हुई हैं।

पुलिस वाले लोग भी पुलिस ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पे वाइट कलर की टाइलें रखी हुई हैं।

यहां पर एक आपको ये नदी दिखाई दे रही है और--

सूरज भी दिखाई दे रहा है यहां पर और नीला आसमान दिखाई दे रहा है एकदम--

व्यक्ति है जो कि अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे कुछ--

और ये यहां पे बहुत सारे फूल भी यहां पे रखे हुए हैं और--

कटिंग के फोटो भी लगे हुए हैं और ऊपर देखिए मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं यहां पर।

एक यहां पे पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक गुरुद्वारे के पास में एक वेन खड़ी हुई है व्हाइट कलर की और यहां पे एकअ --

बिल वगैरह कुछ बना रहा है पीछे यहां पे ज्वेलरी रखी हुई है।